तीन लडकियों ने येलो एंड वाइट कलर की टी-शर्ट पेहनी हैं।

दुकान में कुछ रखे हुए डब्बे दिखाई दे रहें हैं।

कुछ बैलून्स लगे हुए नजर आ रहें हैं।

एक झोपड़ा नजर आ रहा है।

बिल्डिंग पर कांच लगे हुए दिखाई दे रहे हे।

एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है। खुटी पर कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे है।

एक लड़का शॉल ओढ़े हुए बैठा हुआ है।

लड़के ने व्हाइट कलर की शर्ट और ग्रे कलर की पेंट पहनी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ खिड़कियाँ दिखाई दे रही है। कुछ पेड़ नजर आ रहे है।

इमेज में एक गेट दिखाई दे रहा है।

प्लेट में चटनी दिखाई दे रही है।

टेबल पर कुछ फुल नजर आ रहे है।

कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बिजली के खम्बे नजर आ रहे हैं।

पानी नजर आ रहा है पानी में पेड़ो की परछाई नजर आ रही हैं।

बोर्ड का रिफ्लेकसन जमीन पर नजर आ रहा है।